और उसे डंडे पर कुछ कपड़े डाले हुए हैं पीछे एक पपीता का केले का पेड़ दिख रहा है पीछे कुछ एक झाड़ी-सा है।

आगे एक स्लिप सड़क है कुछ पत्थर से डले हुए है कुछ गिट्टिया है।

सामने कुछ फलो कि टोकरी दिख रही हैं एक ग्रीन कलर का टोकरा हैं और एक स्काई ब्लू टोकरा हैं ये एक येलो टोकरी हैं।